वहां पे कुछ काफी सारे ए_सी भी लगाया गया है।

और उसके अंदर कुछ सामान भी दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति सामने से आ रहा है।

जिसके सामने एक का बड़ा सा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है।

उसके सामने यात्रीगण के लिए बैठने के लिए बना हुआ है।

यहां पे एक दो बड़ा बिल्डिंग है।

और उसके चारों ओर से घास फूस भी जमा हुआ है।